यह एक रूम की तस्वीर है।

यह एक रोड की तस्वीर है जहां पे एक आदमी हेलमेट लगाकर स्कूटी से जा रहा है।

यहां पे एक पोस्टर भी लगी हुई है।

यह एक दिन का समय है आसमान में बादल जैसा दिखाई पड़ रहा है ।

यह एक रूम की तस्वीर हैं।

यहां पे बैलून भी लगा गया है।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

यहां पे एक व्हाइट कलर का पंखा भी रखा गया है।

यह एक सैलून का तस्वीर है ।

यहां पे एक फैन भी लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं।

यहां पे एक पेड़ है लेकिन इसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी है।

जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

यहां पे पेड़ पौधों को कटिंग किया गया है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है।

यहां पे एक औरत दिखाई दे रही है जो कुछ बेच रही है।

यहां पे पौधे भी लगे हुए हैं जिसमें लाइट का भी डेकोरेट किया गया है।

यहां पे एक यीशु मसीह का मूर्ति रखा गया है।

यहां पे बहुत सारे मेल और फीमेल दिखाई पड़ रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

दोनों फ्रिज के आगे आइसक्रीम का पोस्टर छापा हुआ है जो येलो कलर का है।

बिल्डिंग के आगे से बहुत लोग जा रहे--